हरी-हरी घास हमें दिखाई दे रही है।

और पेड़ हमें हरे भरे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और नीचे दो आदमी और गाड़ियां खड़ी नजर आ रही हैं।

हमें गाड़ियाँ खड़ी दिखाई दे रही हैं जिनके नीचे हमें बर्तन रखे नजर आ रहे हैं।

और हमें दिखाई दे रहे हैं और भी मशीनें रखी हुई हैं।

तस्वीर के अंदर हमें एक जगह दिखाई दे रही है जिसकी छत में हमें डिजाइन डला हुआ दिखाई दे रहा है।

एक शेड डला हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें पानी की काली टंकियां रखी हैं।

नीचे हमें कार खड़ी हुई नजर आ रही है जीसमे सफेद काली--

और दीवार पर कांच पर छत पर ये लगे हुए हैं ये बलून ।

कुर्सी रखी हुई हैं टेबल और झंडे लगे हुए हैं छोटे।

जिस पर डिज़ाइन बना हुआ है और पॉलिश की गई है।

और चांदी के हमें जेवरात रखे हुए नजर आ रहे हैं।

और कचरा पड़ा हुआ है जिसे एक आदमी देख रहा है।

और ये हमें पेशेंट के बैग बेड हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं हॉस्पिटल के।

और हमें दिखाई दे रही हैं लाइटें लगी हुई हैं उसमें।

लोग चल फिर रहे हैं खड़े हैं और बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक आदमी हमें तस्वीर में दिखाई दे रहा है और उसके पीछे--

अ ज्वेलरी शॉप है जहाँ पर बहुत सारी हमें महिलाएं बैठी--

और पेड़ लगा हुआ है सफेद आसमान दिखाई दे रहा है।

बोर्ड लगा नजर आ रहा है हमें पहाड़ी कछुआ का।

नई गाड़ी हमें बिल्कुल पेंट करी हुई नजर आ रही है।

आस-पास हमें दो तस्वीरें बड़ी और लगी हुई दीवार पर दिखाई दे रही हैं।

और हमें रखे हुए अलमारी पर चाय के कप और हमें सामान भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और एक नीले अह कपड़ों में बैठा आदमी उसमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है।